पीछे का टाइल्स भी थोड़ा सा ब्राउन कलर का है।

यहां में बेडा कंपन बनाकर रखा हुआ है ये लोग।

ये बहोत सारा पेंटिंग डाल के रखा हुआ है।

ये दो अह औरत है जो एक येलो कलर का गाले पहन के रखा हुआ है ब्लू कलर का कोट डाल के है।

एक ठो मग और दिखाई दे रहा है।

और उसके पीछे में एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

जो लड़का ही है और काफी ज्यादा लड़का व्हाइट कलर का--

ये लोग यहां में लंच करने बैठे हुए हैं।

रेड कलर का ये आस पास मे लगा के रखा हुआ है।

ये बंबू से बनाया गया हुआ है।